संधि का पूजा चल रहा है बिल्डिंग को रंग वायर के वायर से सजाकर चमकदार दीए हैं।

यह एक डांस का प्रैक्टिस करते हुए काफी सारे लड़कियाँ हम्म औरत सारे यहाँ पर --

यह बंधन बैंक है जिसके आगे एक आदमी स्कूटर पर और तीन-चार बाइक आगे लगे हुए हैं।

जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है अपना रंग पसंद झूला झूलते है।

जहाँ पे सारे बच्चे मस्ती में अपना गेम को अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं लाईन ब लाईन सारे बच्चे आगे जा रहे--